ये कमरा है कमरे में बहुत सारे समान रखे गए हैं समान के बगल में एक व्यक्ति बैठा हुआ है।